एक बहुत बड़ी इमारत जो कि सफेद रंग तथा काले रंग की है नज़र आ रही है।

साथ-साथ थोड़ी सी पीछे की जगह भी नज़र आ रही है।

व्यक्ति भी नज़र आ रहे हैं सामने की तरफ--

हवा में है पीछे की तरफ एक वृक्ष भी नजर आ रहा है जोकि हरे रंग के पत्तों से भरा --

एक व्यक्ति नीले रंग का कोट पहने हुए सफेद रंग की कमीज तथा काले रंग की जींस पहने हुए--

कुछ मोटरसाइकल खड़े हैं पीछे का आसमान भी देखा जा सकता हैं तथा साथ ही मे--

बाहर की तरफ सफेद रंग की दीवार नजर आ रही है अ जिस पर लोहे की ग्रिल्स लगी हुई है।

तरफ लाल रंग की दीवार भी नज़र आ रही है साथ ही में कुछ मोटरसाइकिल्स खड़े हैं तथा नीचे की--

तथा उनके बाहर भी तोड़ रहे है जिसके साथ ही साथ में पीछे की तरफ एक व्यक्ति--

साथ ही में कुछ और पहाड़ तथा पेड़ भी देखें जा सक --

काले रंग की नज़र आ रही है पीछे का वृक्ष भी साफ देखा जा सकते हैं।

कुछ घास भी नजर आ रहा है नीचे की तरफ मिट्टी तथा एक तरफ--